यह एक हॉस्टल के ग्राउंड का दृश्य है इस ग्राउंड के चारों तरफ बाउंड्री किया गया है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग का दीवार की कलर व्हाइट है और ग्रीन से है।

यह एक खाना खाने वाला ढाबे का दृश्य है इसकी दीवार की कलर व्हाइट और रेड से किया गया है और नीचे में सीमेंट का पलस्तरा है।

इसके चारों तरफ छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

बड़े बड़े पेड़ भी हैं और बड़े बड़े पहाड़ भी हैं कुछ चट्टानों भी है।

यह एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग का दृस्य है जो कि एक यह रिजॉर्ट है।

इसमें खिड़की भी है जिसकी कांच लगा हुआ है।

यहां पे एक लाइन वाला पुल भी है पुल के आगे एक कुत्ता बैठा है।

यह एक कारखाने का दृश्य है जोकि रोड के किनारे है।

मंदिर की आगे एक पोल भी है।

कुछ झाड़ियाँ भी हैं और कुछ कुछ पेड़ भी सूखे हुए हैं।

इसके नीचे जमीन पर ग्रे कलर की टाइल्स बिछी हुई है।

यह एक ब्यूटी पार्लर का दुकान का दृश्य है।

ऊपर की छत पर ईसा मसीह का एक फोटो भी लगा हुआ है।

एक लाइन का बोर्ड भी लगा हुआ है बोर्ड के आगे एक बड़ा सा मिरर है।

और एक बड़ा सा झूमर भी टंगा हुआ है।

इसके नीचे में ऑरेंज कलर की कारपेट बिछी हुई है।

यह एक बैंक के बिल्डिंग का दृश्य है इसकी दीवार की कलर आसमानी है।

असमान एकदम धुंधला है और इसमें तीन नाव भी हैं।

एक नाव पूरा पुरुष महिला बच्चे से भरा हुआ है।

ये एक कमरे का दृश्य है इसकी दीवार की कलर ब्लू कलर की है और नीचे में व्हाइट का टाइल्स बिछा हुआ है।

खिड़की के बगल में एक टेबल है टेबल के ऊपर एक घड़ी भी रखा हुआ है।

पर कुछ कार्यक्रम भी हो रहे है और नीचे में छोटे छोटे कैमरे भी लगे हुए है।

यह एक कॉलेज की बिल्डिंग का दृश्य है।

टेबल पर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है सॉस की डिबिया और कुछ टिशूज पेपर।

इसमें एक बड़ा सा हाथी है जो की सीमेंट का है।

इसमें ढेर सारे टूटे फूटे सामान रखे हुए हैं।